इस तस्वीर में आप देख सकते है। बहुत ही एक बड़ी इमारत के पास एक पेड़ है। कुछ फूल पौधे हैं।

इस तस्वीर में आप देख सकते है रात के समय तस्वीर खीची गई है। एक इमारत है। बहोत सारे पेड़ पोधे हैं।

यह तस्वीर बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की मेन गेट की है।

तस्वीर मे आप एक मस्जिद के अंदर के दृश्य को देख सकते हैं जहाँ पर बहुत सारी खिड़किया लगाई गई हैं।